और आपका आप देख सकते है गेट के अंदर की तरफ जो है ग्राउंड बने हुए है स्टेडियम में और रनिंग के ट्रैक है और कुछ झूले भी बने हुए है।

और यहाँ पे कुछ तमिल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है और दूसरी तरफ़ बीच में भी --

जो है इसके ऊपर बोर्ड बनने लाइट बोर्ड बना हुआ हैं।

इसके अंदर आपको बहोत सारे कलरफुल अ स्लाइड वाटर स्लाइडिंग है।

स्टैंड के ऊपर खड़े है जोकि एंकरिंग कर रहे है और बहोत ही अच्छे से प्रोग्राम --

और यहाँ पे आप भीड़ देख सकते है बहोत ही भारी भीड़ है और यहाँ पे बहोत सारे लोग है और ये शायद एक मेला लगा हुआ है ऊपर--

जो बेंचर डली हुई है उन पर बैठे हुए हैं रात का समय है तो लाइटे ऑन है।

ये तस्वीर एक लोकल मार्केट के सामने की तरफ एक बिल्डिंग बने हुए और बिल्डिंग का जो पेंट है वो थोड़ा भत्ता हो चुका हैं।

इधर एक मिरर रखा हुआ है मिरर के सामने एक मशीन है जोकि लड़का उसपे वर्कआउट कर रहा है अपने बाइसेप्स की जो है वर्कआउट --

यह फोटो में पोज़ बना के खड़ा हैं पोज़ का फोटो एक जो उनका दोस्त है परछाई में दिख रहा है जिसने ये फोटो उतारा है।

एंड कवर किया गया है मसाले--

जिसपे इनकी जो है सर्विसेज है वो लिखी गयी है इसके ऊपर--

और नैपकिन वगैरा रखे गये रेस्टोरेंट बहुत ही शानदार है और साफ-सफाई भी बहुत ही अच्छी है।

शॉप का नाम है और अतुल जो है यहाँ अम्बेसडर --

ऐसी नई बहुत सारी ऑटो रिक्शाऐं देख सकते है अलग-अलग तरीके की --

एक तस्वीर है एक लोकल बस स्टैंड की है आप यहाँ देख सकते हैं बारिश का मौसम हैं सड़क भीगा हुआ हैं।